नमस्कार !
discrete time system पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे:
* स्टेट स्पेस और ट्रांसफर फंक्शन डिस्क्रिप्शन्स के बीच रूपांतरण
* डिस्क्रीट टाइम सिस्टम को परिभाषित करना और इसके स्टेप रेस्पॉन्स को प्लॉट करना
* कंटीन्यूअस सतत टाइम सिस्टम को डिस्क्रिटाइज़ करना
प्रदर्शन के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ उबन्टु 1204 ऑपरेटिंग सिस्टम और scilab 533
इस ट्यूटोरियल के अभ्यास के लिए आपको scilab की बुनियादी जानकारी होनी चाहिए
यदि नहीं तो कृपया spokentutorialorg पर उपलब्ध scilab ट्यूटोरियल्स को देखें
स्टेट स्पेस मॉडल:
x डॉट इज़ इक्वल टू a x प्लस b u
y इज़ इक्वल टू c x प्लस d u
sys 3 इज़ इक्वल टू syslin ब्रैकेट में कोट्स में c कॉमा a कॉमा b कॉमा c कॉमा d से उल्लिखित की जाती है
उचित साइज़ की पूर्वउल्लिखित मेट्राइसिस a b c और d के लिए
अपने कंप्यूटर पर scilab खोलें
टाइप करें sys 3 इज़ इक्वल टू syslin ब्रैकेट में कोट्स में c कॉमा 4 कॉमा 3 कॉमा 6 कॉमा 9 ब्रैकेट बंद करें और एंटर दबाएं
डिस्प्ले को जारी रखने के लिए एंटर दबाएं
यह सिंगल स्टेट सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट का उदाहरण है
आउटपुट में मेट्राइसिस a b c और d और इनिशियल स्टेट x ज़ीरो होगा
कंसोल को क्लियर करने के लिए टाइप करें clc
जैसा आप देखते हैं उदाहरण के लिए scilab कंसोल पर मेट्राइसिस a b c d परिभाषित करते हैं
a इज़ इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट खोलें 2 स्पेस 3 सेमीकोलन 4 स्पेस 5 स्क्वायर ब्रैकेट बंद करें
enter दबाएं
b इज़ इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट खोलें 1 सेमीकोलन 2 स्क्वायर ब्रैकेट बंद करें
enter दबाएं
c इज़ इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट खोलें माइनस 3 स्पेस माइनस 6 स्क्वायर ब्रैकेट बंद करें
और enter दबाएं
d इज़ इक्वल टू 2
enter दबाएं
अब हम इन मेट्राइसिस को पिछली कमांड में प्रतिस्थापित करते हैं
sys 4 इज़ इक्वल टू syslin ब्रैकेट में कोट्स में c कॉमा a कॉमा b कॉमा c कॉमा d ब्रैकेट बंद करें और एंटर दबाएं
आपको निम्न आउटपुट मिलेगा
डिस्प्ले को जारी रखने के लिए एंटर दबाएं
जैसा आप देखते हैं आउटपुट में मेट्राइसिस a b c d और इनिशियल स्टेट x ज़ीरो होगा
जाँचें कि क्या sys4 के पोल्स a की आइगन वैल्यूज़ के समान हैं
इसके लिए आप p l z r फंक्शन और spec फंक्शन प्रयोग कर सकते हैं
s s 2 t f कमांड का उपयोग स्टेटस्पेस सिस्टम sys s s के ट्रांसफर फंक्शन को ज्ञात करने में किया जा सकता है
इसे क्लियर करने के लिए अपने scilab कंसोल पर टाइप करें clc
और फिर टाइप करें: sys कैपिटल t कैपिटल f इज़ इक्वल टू s s 2 t f ब्रैकेट में sys 4 ब्रैकेट बंद करें और
enter दबाएं
आप यह आउटपुट देखते हैं
यह sys tf इक्वल्स टू ss 2 tf ब्रैकेट में sys ऑफ़ ss की फॉर्म में है
पहले परिभाषित sys 3 के लिए ss 2 tf फंक्शन उपयोग करें
sys t f एक नया वेरिएबल है जिसके लिए denom कमांड लागू होती है
यह sys 4 पर लागू नहीं होता है क्योंकि यह स्टेट स्पेस फॉर्म में है
निम्न उदाहरण को हल करें
नीचे परिभाषित सेकंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन का स्टेट स्पेस रियलाइज़ेशन ज्ञात करें
t f 2 s s कमांड प्रयोग करें
स्टेट स्पेस फॉर्म में नए सिस्टम मानिये sys s s के लिए जाँचें यदि मेट्रिक्स a की आइगन वैल्यूज़ और ट्रांसफर फंक्शन g ऑफ़ s के पोल्स समान हैं
ट्रांसफर फंक्शन को प्राप्त करने के लिए सिस्टम sys s s की मेट्राइसिस a b c d प्रयोग करें
जाँचें यदि उत्तर मौलिक है
अब हम एक डिस्क्रीट टाइम सिस्टम को परिभाषित करते हैं
अंश और हर पॉलीनॉमिअल्स में वेरिएबल के लिए z प्रयोग करना सामान्य है
याद करें कि वेरिएबल z एक शॉर्टकट रखता है
z=poly ब्रैकेट में 0 कॉमा क्वोट्स में z के बजाए z=%परसेंटेजz उपयोग करें
scilab कंसोल पर जाएँ
क्लियर करने के लिए टाइप करें clc
टाइप करें z इज़ इक्वल टू परसेंटेज z
और enter दबाएं
अब हम फर्स्ट ऑर्डर डिस्क्रीट टाइम सिस्टम परिभाषित करते हैं
scilab कंसोल पर टाइप करें:
d t system इज़ इक्वल टू syslin ब्रैकेट में कोट्स में स्मॉल d कॉमा z डिवाइडेड बाइ ब्रैकेट में z माइनस 05 ब्रैकेट बंद करें बाहरी ब्रैकेट बंद करें
enter दबाएं
इसके लिए हम syslin फंक्शन प्रयोग करते हैं
इस समय हम कंटीन्यूअस टाइम के बजाय डोमेन को डिस्क्रीट टाइम की तरह उल्लिखित करते हैं
स्टेप रेस्पोंस को जांचने के लिए हमें इनपुट को स्पष्ट रूप से ones की तरह परिभषित करना है
उदाहरण के लिए: 50 पॉइंट्स के लिए
scilab कंसोल पर टाइप करें:
u इज़ इक्वल टू ones ब्रैकेट में 1 कॉमा 50 ब्रैकेट बंद करें सेमीकोलन लगाएं
और enter दबाएं
csim के बजाय हमें इस सिस्टम को सिमुलेट करने के लिए flts फंक्शन का प्रयोग करना है
scilab कंसोल पर टाइप करें
कंसोल को क्लियर करने के लिए clc
y इज़ इक्वल टू f l t s ब्रैकेट में u कॉमा d t system ब्रैकेट बंद करें सेमीकोलन लगाएं
और enter दबाएं
अब टाइप करें plot ऑफ़ y और एंटर दबाएं
आउटपुट प्लॉट होगा
ग्राफ़िक विंडो को बंद करें
यह दिए गए कंटीन्यूअस टाइम सिस्टम को डिस्क्रिटाइज़ करने में मदद करता है
यह dscr फंक्शन प्रयोग करके किया जाता है
अब हम एक कंटीन्यूअस सिस्टम s इज़ इक्वल टू परसेंट s को परिभाषित करते हैं और
sys g इज़ इक्वल टू syslin ब्रैकेट में कोट्स में c कॉमा 2 डिवाइडेड बाइ ब्रैकेट में s स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाइ s प्लस 9 ब्रैकेट बंद करें बाहरी ब्रैकेट बंद करें और एंटर दबाएं
अब सैंपलिंग पीरियड ऑफ़ 01 के साथ सिस्टम sys g को डिस्क्रिटाइज़ करते हैं
कंसोल पर क्लियर करने के लिए टाइप करें clc और फिर टाइप करें:
sys 5 इज़ इक्वल टू d s c r ब्रैकेट में sys g कॉमा 01 ब्रैकेट बंद करें और फिर एंटर दबाएं
डिस्प्ले को जारी रखने के लिए एंटर दबाएं
जैसा आप देखते हैं सिस्टम मेट्राइसिस a b c d और इनिशियल स्टेट x ज़ीरो की तरह डिस्क्रिटाइज़ किया जाता है
ध्यान दें कि हम स्टेट स्पेस रिप्रजेंटेशन में डिस्क्रिटाइज़्ड सिस्टम प्राप्त करते हैं
हम इसको s s 2 t f फंक्शन प्रयोग करके डिस्क्रीट टाइम में ट्रांसफर फंक्शन रिप्रजेंटेशन में बदल सकते हैं
इसके लिए scilab कंसोल पर जाएँ
टाइप करें clc और इसे क्लियर करें
अब टाइप करें sys 6 इज़ इक्वल टू s s 2 t f ब्रैकेट में sys 5 कॉमा 01 ब्रैकेट बंद करें और एंटर दबाएं
आउटपुट ट्रांसफर फंक्शन देता है
इस tutorial में हमने सीखा:
* स्टेट स्पेस और ट्रांसफर फंक्शन डिस्क्रिप्शन्स के बीच रूपांतरण
* डिस्क्रीट टाइम सिस्टम को परिभाषित करना और इसका स्टेप रेस्पोंस प्लॉट करना
* एक कंटीन्यूअस टाइम सिस्टम को डिस्क्रिटाइज़ करना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
इस mission पर अधिक जानकारी spokentutorial org/nmeictintro पर उपलब्ध है
आय आय टी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद